ये किसी दुकान का फोटो लग रहा है जनरल स्टोर का।

यहां अभी अभी उद्घाटन हुई है ऊपर बैलूंस लगे हुए हैं सजावटी हुई हैं।

दूसरी तरफ से एक और बाइक वाला है दोनों लोग पेट्रोल के लिए रुके हुए हैं पेट्रोल पंप के साइड में एक कार लगी हुई है।

यह किसी वोटर पार्क का फोटो लग रहा है यहाँ लोग बहुत सारे लोग रेडी हो रहे हैं स्विमिंग करने के लिए और भी बहुत सारे टाइप्स के यहाँ पे स्लाइडिंग लगी हुई है।

अपना अपना खाना खा रही है एक गाय है जो सामने की तरफ देख रही है बाल्टियां देख रही है पीछे पीछे से अअ पूरा कवर किया हुआ है।

यह किसी मॉल का फोटो है वी टू का एंड बाहर एक बाइक लगी हुई है यहाँ एक लड़का खड़ा हुआ है और भी लोग दिख रहे हैं एक--

यह किसी गेस्ट हाउस का फोटो लग रहा है यहाँ पे अअ लाइट्स लगी हुई है रेड ब्लू ग्रीन एक चेयर लगा हुआ है एक टेबल है जिससे एक चश्मा दिख रहा है।

और सब सामने सोफा रखा हुआ है एक टेबल है जिसपे टिशू पेपर्स है ग्लासेस हैं एक अअ--

पीछे फ्रिज रखी हुई है एक वॉल फैन भी है और बहुत सारे टाइप्स के कप्स भी है।

ये किसी ज्वेलरी का फोटो लग रहा है जहां बहोत सारे चेयर्स लगे हुए हैं दो तीन आदमी है एक बैठा हुआ है और--

यह किसी होटल का फोटो है जिसका नाम होटल पार्क एंड फैमिली रेस्टोरेंट है आसपास बहुत सारे अ लोग हैं।

यह किसी ढाबे का फोटो है यहाँ पे अ दीवारों पर बहुत सारे कार्टूनस के फोटोस लगे हुए हैं ऊपर एक फेन है।

अअ बहुत सारे चेयर्स है एक टेबल पे खाना रखा हुआ है और वहीं पे ग्लासेस भी है।

यह एक छठ पूजा का फोटो है यहाँ पे बहुत सारे लोग पूजा के लिए बैठे हुए हैं एक अअ औरत है जो कि कोशी भर रही है।

ये किसी रेस्टोरेंट का फोटो है जहाँ पे एक फ्रिज लगी हुई है और एक टेबल है जिस पे एक पानी का बोतल रखा हुआ है एक ग्लास है कुछ चेयर्स लखी रखी हुई हैं।

और सामने पूरा ग्राउंड है। अंदर भी पूरा ग्राउंड ही दिख रहा है। अंदर एक दो इंसान हैं जो कि चल रहे है।

और मिरर्स रक्खी हुईं हैं और मतलब आ बेड रक्खी हुईं हैं और भी बहुत सारी टाइप्स की चीजे रक्खी हुईं हैं।

ये किसी सिलाय सिलाई मशीन का दुकान दिख रहा है जिसमें बहुत सारे टाइप्स सिलाई मशीन रखे हुए हैं और कुछ डब्बे रखे हुए हैं सामने टेबल पे --

और पानी का एक बोटल रखा हुआ है डब्बा रखा हुआ है और दुकान में एक चेयर है कुछ अअ मशीनें रखी हुई हैं।

अ बगल में होस्ट जोकि होस्ट कर रहे हैं वो खड़े हैं उनके साथ एक और पर्सन खड़े हैं और जो की डेकोरेशन है ओ भी बहोत अच्छे किया गया है।

और पूरा रूम एकदम खाली है कोई लाइट भी नहीं जल रही है।

यह किसी स्टेशन का फोटो है जो कि पूरा एकदम एक साइड से एकदम पूरा सुनसान है और एक तरफ बहुत सारे लोग खड़े हैं उधर ट्रैक्टर्स ट्रक सब है।

सामने का गेट दिख रहा है एक टीवी लगी हुई है एल_सी_डी बहुत सारे फैंस भी लगे हुए हैं।

यह किसी स्टेशन का फोटो है यहाँ पे एक ट्रेन आ रही है यह अ दूसरे प्लेटफार्म का व्यू है।

और अ पूरा ट्रे पूरा स्टेशन एकदम खाली दिख रहा है सुनसान दिख रहा है दूसरे प्लेटफार्म पे कोई नहीं है।

ये किसी एजेंसी का फोटो दिख रहा है जहाँ पे बहुत सारे टाइप्स की बाइक्स रखी हुई हैं बहुत सारे टाइप्स की स्कूटीज रखी हुई हैं पीछे दीवारों पर बहुत सारे टाइप्स के अ --

यह किसी वोटर पार्क का फोटो है जहाँ पर बहुत सारे लोग अ स्विमिंग कर रहे हैं और कुछ स्लाइडिंग्स भी है जिस पे लोग स्लाइड कर रहे हैं।

ड्रिंक्स की दुकान है शायद जहाँ पे दो आदमी बैठे हुए हैं चेयर पे--